देखने मे काफी खुबसूरत लग रहा है ।

यहाँ पे एक बस है ऐसा लग रहा है के बस स्टैंड --

ये काफी हरा भरा है | देखने में भी कुछ

जो अच्छा लग रहा है ।

ये देख सकते हैं मॉल है । यहाँ पे बच्चे का गाड़ी लगा हुआ है | यहाँ एक सीढ़ी लगी है ।